ब्लू कलर का टी-शर्ट पहनी है और सामान दिखाई दे रहा है।

ग्राउंड पे इस कॉलेज दिखाई दे रहा है इस कॉलेज कॉलेज--

वाइट कलर की शर्ट और ब्लैक ।--

ब्लैक दिखाई दे रही है येलो दिखाई दे रही है वाइट दिखाई दे रही है।